यहाँ से ट्रेन आती-जाती है यहाँ से लोग ट्रेन पकड़ते हैं इस स्टेशन से उस स्टेशन जाने के लिए ये स्टेशन पे सीढ़ियां बनाई जाती है जो लोहे की बनी होती है।